जिनके सामने एक ऑटो दिखाई दे रहा है ऑटो के पास दो लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारा लगेज रखा हुआ दिखाई दे रहा एक रक्शा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो अपना फोटो क्लिक करा रहा --

ये हाथी पानी में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर कुछ लोग पानी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके दांतो पर कुछ कवर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं। यहाँ पर बहोत सारे पानी दिखाई दे रहा है।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

दुकान दिखाई दे रही है जिसमे गोलगप्पे बिकते हुए दिख रहें हैं| ऊपर दो लोग खड़े हुए है। ऊपर --